इस तस्वीर में एक पार्क दिखाई दे रहा है।

हाथ में तितली का निशान लिखा हुआ है।

आलू का रंग कई तरह का है।

इस तस्वीर के अंदर दो बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रहीं हैं।

दोनों मजदूर काम कर रहे है।

बिल्डिंग के सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक सड़क दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के बीच में खिड़की दिखाई दे रही है खिड़की में तीन ए_सी लगे हुए हैं।

नीचे से वाइट कलर का है।